पार्क है जहाँ पार्क के किनारे पर गेट बना है जिसके ऊपर फूलों के पौधे लगे हुए हैं फूल पिंक कलर के हैं नीचे घास उगी हुई है।

इसके दीवारें ढह चुकी है व कुछ अक्षर लिखे हुए हैं।